फोटो लगा हुआ है ऊपर पंखा चल रहा है घड़ी भी है फिर --

बहुत सारे रास्ते बन रास्ते के साइड में कुछ तो प्लांट लगे हुए हैं।

एक कपड़ा का दुकान है जहाँ पे एक बाहर लगा हुआ है।